और दोनों तरफ पूरी ऐसी अलमारियां बनी हैं और उसमें ड्रॉवर लगे हुए हैं।

आगे कांच की दीवाल है जो कि यह ऑरल--

आजू बाजू पेड़ नजर आ रहे हैं और वहां पर एक--